पुराना महेल नजर आ रहा है उस पुराने महेल के ऊपर चबूतरे भी बने हुए हैं।

मुझे इस चित्र में एक दुकान नजर आ रहा है उसे दुकान के अंदर शेल्फ में--

एक इमारत नजर आ रही है वह इमारत--